इस फोटो में एक बहुत बड़ा प्रवेश द्वार जिसमें छक एवं

उस फ़ोटो में बहुत बहुत बड़ा मस्जिद दिखाई दे रहे है जिसमें--

अब एक व्यक्ति खड़ा है मोबाइल पकड़कर जो।

लंबे-लंबे बाल है गोरी गोरी सी लड़की है और पीछे पेंटिंग है।

और सामने बाउंड्री है पेड़-पोधे है तीन गाड़ी खड़ा है दो ब--.

दो बड़ा बड़ा दिख रहा है प्रवेश द्वार है इधर है उधर ।

और डबल फ्लोर का है महात्मा गादी का एक मूर्ति दिखाई दे रहा है।

और पैसा निकालने की काम कर रहे हैं।

यह एक बहुत बड़ा मकान है जिसमें सामने पूरा सामने पूरा गार्डन है हरा भरा।